पीछे दो कुर्सी रखी हुई है।

ए_टी_एम का गेट शीशे का लगा हुआ है।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

जमीन पर पत्तियाँ पड़ी हुई हैं सुखी सुखी घास भी लगी हुई है।

इसके नीचे एक सफेद कलर की कार दिख रही है।

इस फोटो में एक अलमारी दिख रही है।

इस फोटो में सामने एक जिम दिख रहा है और कुछ लोग भी दिख रहे हैं।